यख मा जी एक हरयूं भरयूं मैदान कर छा यख मा जी एक छोटू सा कु मेलु कर छ लग्युं।

इखमा जी कुछ मकान छन दिखेण लग्यां इखमा जी झाड़ी छन दिखेण लगी बिट्ठा छन दिखेण लग्या।